सामने दीवाल है जो सफेद रंगकी है पीछे साइड पे घर है जो सफेद रंगकी है सामने बोहोत सारे घास उगे हुए हैं जो हरे रंगकी है।

सामने कुछ लोग डमरु बजा रहे हैं एक लोग हारमोनियम बजा रहा है एक आदमी खड़ा है जो सफेद रंग का ड्रेस पहने पीछे भी एक औरत खड़ी है जो पीले रंग का ड्रेस पहने एक लड़की खड़ी है छोटी ब--

इस पर सफेद क्रीम लगाया गया हरी चटनी लगाई गई है बगल में एक हरी चटनी रखी हुई है थोड़ी सी बगल में सॉस रखा हुआ है जो गिलास में हैऔर जो टेबल का रंग हैलाल है ।

और सफेद रंग की पाइप आई हुई है और तार लगे हुए जो काले रंग की है बगल में जो पीछे टीना है और सफेद रंग का दीवार भी सफेद रंग की है।